नीचे में बहोत सारा टिंना सब भी है।

ये घर में बहुत सारा लाइट्स सब भी जल के हैं।

सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया हुआ है।

एक ही सामने बहोत सारा बिल्डिंग से भी बना के हैं जो कि व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

नीचे में बड़ा बड़ा पेड़ थपी हैं।

ये तस्वीर में मुझे एक इंसान भी बैठे के हैं।

ये तस्वीर में मुझे बड़ा सा रूम दिख रही है।

साइड में बहुत सारा पेड़ पौधे सब भी लगाया हुआ है।

ऊपर में ए_सी भी लगाया हुआ है।

ये समुंदर के ऊपर में तीन ठो नाव भी रख के है।

ये तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान दिख रही है।

रेस्टोरेंट के ऊपर एक लाइट भी जला के है।

ये जंगल में बहुत सारा पेड़ पौधे सब भी लगाया हुआ हैं।

सामने मे बैठने के लिए बहुत सारे चेयर सब भी रखे हैं।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा मॉल दिख रही है जहां पे बहुत सारा कपड़ा सब भी टंगाया हुआ है।

यह मून को व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

ये तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है जोकि येलो और रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

इ बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां लगाया हुआ है।

ये मैदान में बहुत सारा इंसान लोग भी चल के हैं।

सामने में ग्रीन कलर के पत्ते सब भी हैं।

ये तस्वीर में मुझे बहुत सारे घर बना के दिख रहे है जो की रेड येलो ग्रीन और ब्लू कलर के है।

पीछे में बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बनाया हुआ है।